हरा कलर का चक्र बना हुआ है सड़क दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक पुल दिखाई दे रहा है।

एक लोहा का रत दिखाई दे रहा है।

एक पाइप दिखाई दे रहा है।

आसमान दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।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

एक वाइट कलर का पोस्टर दिख रहा है।

जमाल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक पार्क दिखाई दे रहा है कई सारे आदमी दिख रहा है।

घर के बाहर कई सारे कुर्सियां दिख रही है।

टेबल दिखाई दे रहा है।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

तार दिखाई दे रहा है है।

हरी भरी पत्तियां दिखाई दे रही हैं कई लड़के घूम रहे हैं।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

कई सारे गाड़ियां दिख रही हैं ठेला दिखाई दे रहा है एक औरत दिखाई दे रहे हैं हम--

पेट्रोलियम दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।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

कई सारे आदमी बैठे हुए दिख रहे हैं।

हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

एक स्टेज दिखाई दे रहा है।

नाव दिखाई दे रहा है।

सड़क किनारे एक पार्क दिख रहा है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

नदियां दिखाई दे रही है।

एक सूरज भगवान दिख रहा है।

पहाड़ दिखाई दे रहा है।

एक लड़का दिखाई दे रहा है।

सीडी दिखाई दे रहा है।

हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

टावर दिखाई दे रहा है।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

जिसके अंदर कई सारे कपड़े दिख रहे हैं लाइट बढ़ रहा है।

पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

कारपेंटर दिख रहा है।

इस तस्वीर में जंगल दिखाई दे रहा है।

कुछ भुट्टे दिखाई दे रहे हैं।

आसमान दिखाई दे रहा है पूरे कचड़े दिख रहे हैं।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

लाइटें बढ़ रही है फिर क्या दिख रहा है--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

एक ठेला दिखाई दे रहा है।

एक टेंपो नजर आ रहा है एक स्मारक दिख रहा है.

कई सारे गाड़ियाँ दिख रही है।

हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

आदमी दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।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

सड़क के किनारे कई सारे गाड़ियाँ खड़ी दिख रही है।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

मैजिक दिखाई दे रहा है।

आदमी दिखाई दे रहा है।